इस तस्वीर मे बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे है।

यह किसी होटल के बाहर पार्किंग किया हुआ है।

तस्वीर किसी होटल के हाल की है।

यहां पर कुछ लोग खड़े हैं।

इस दीवाल पे एक लाल रंग की तस्वीर भी बनी हुई है।

यहां पर बहुत लोग बैठे हुए भी हैं।

यह स्टेशन पतरातू में है।

इस तस्वीर में एक गुलाब का फूल भी है।

यहां पर बहोत सारे बैग भी रखे हुए हैं।

यह तस्वीर किसी कार वाशिंग सेंटर की है।

यहां पर बहोत सारे पेड़ लगाए हुए है।

तस्वीर किसी होटल के बाहर की है।

इस हॉस्पिटल के बाहर एक एंबुलेंस भी लगा हुआ है।

यहां पर हॉस्पिटल का नाम द्वारिका जी हॉस्पिटल है।

इस तस्वीर में एक मूर्ति भी दिख रहा हैं।

मूर्ति पर बहुत सारे फूलों की माले चढ़ाए हुए हैं।

इस तस्वीर में एक विंड फैन भी दिख रहा है।

यह तस्वीर किसी कपड़ा दुकान की है।

यहां पर बहुत सारे सूट बिक रहे हैं।

इस गोदाम का नाम लक्ष्मी इंडियन सर्विस है।

अस्पताल के बाहर एक लंबी चौङी सड़क है।

अस्पताल का नाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है।

यहां पर एक आदमी बैलून बेच रहा है।

यहां पर बहोत सारे चेयर और टेबल लगे हुए हैं।

दुकान के बाहर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं।

यह तस्वीर किसी कार रिपेयरिंग सेंटर की है।

इस रूम में तार पर कपड़ा भी लटकाया हुआ है।

इस दुकान में एक काउंटर और दो चेयर लगी हुई है।